मज्जिदों एवम् मंदिरों में पूजा उजा के लिए किया जाता है।

फिलहाल इनकी आवश्यकता अब कम ही है।

यहाँ पे कन्स्ट्रक्शन का काम चालू है।

शिकार वहीं पे दम तोड़ दे। ये लगभग दो या तीन प्रकार के प्रजातियों में पाया जाता है।

यहां पर बस का इंतज़ार करते है और खड़ी मिलने पर --

यहाँ पर बच्चे आते हैं और अपना-अपना यहाँ पर जान अर्जित करते हैं।